सामने मे एक बड़े से रेस्टोरेंट दिख रही है जिसके ऊपर में होटल हॉलिडे इन बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट लिखा गया है।

बाहर में एक लड़का खड़ा हुआ है जो की येलो कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

अंदर में कुछ पेड़-पौधे लगाए गए हैंऔर जो बाहर में मट्टी जमा है जिसपे छोटे-छोटे घास जमे हुए हैं।

यहाँ सामने में कुछ लकड़ी से कुछ बनाया गया है और दो बांस गाड़े गई है और जिसपे एक पोस्टर लगाया गया है।

यहां सामने में एक घर जैसा बनाया गया है।

यहाँ पर अगल-बगल में ढ़ेर सारे घर बनायीं गयी है और यहाँ पे एक बड़ी सी सड़क दिख रही है।

यहाँ पर एक नदी है। नदी के बीच में बी मा बालू दिख रहा है और इसमें थोड़ी कम पानी लग रही है। बस किनारे-किनारे पानी है बीच में पूरा खाली है।

और इसके नीचे में ढ़ेर सारे घर भी बनाये गए है जो की ब एक सामने में वाइट कलर की बड़ी-सी बिल्डिंग दिख रही है।